चित्र में मैदान दिखाई दे रहा है गाड़ी रखी हुई दिखाई दे रही है एक पुरुष भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बादल दिखाई दे रहें हैं कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहें है हरा भरा दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र मे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है चद्दर सेट दिखाई दे रहे है।